मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति बैठएल एस.बी.आई. बैंक --

एक खड़े हैं एक बंगला है |

चिंटू पण्डे का मूवी का पोस्टर ग्रील्स --

डॉग भी है दो ठो --

फान रहा है दूसरा खड़े है।

सारंगी है तार है हेलमेट है ।

यहाँ पे सब्जी बेच रहा है एक आदमी --